इ बाँस है इ घर है बाँस का ।

चारों से घेरा हुआ है पनि खा लगाया हुआ है|

यहां तालाब है तालाब के आगे पुल है पुल के बगल में घर सब है उसके बगल में पोल है उसके बगल में पेड़ है।